यहाँ पर हमे एक जिम दिख रहा है और हमे यहाँ पर एक रोड नजर आ रही है जो की सिल्वर कलर की है और हमे यहाँ पर एक वाल दिख रही है जो की रेड कलर की है हमे यहाँ पर काफी सारे मिरर देखने को मिल रहे है